कुछ देख रही है यहा एक कमरे मे बैठे हुए है और यहा पे लाइटे जल रही है पंखा ल--

यहाँ एक जेसीबी के द्वारा खोद रहे है। तीन चार लोग दिखाई दे रहे है। यहाँ--

यहाँ बहुत बड़ा रोड है रोड पर के बगल मे पानी भरा हुआ है खंब-- बड़े-बड़े खंबे दिखाई दे रहे है।

रहा है और उन आगे एक पेड़ दिखाई दे रहा है आसमान आसमान व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है।

और इसमें व्हाईट गुलाबी मेस स सफ़ेद र आसमानी कलर के फूल से डेकोरेट किया गया है ब्राउन और पीले कलर के परदे लगे हुए --